आ जी पधारियों ओयो रूम में बाहर एक कार खड़ी है बढ़िया काली कलर की बढ़िया ओयो रूम ।

यंत्र वो संगीत का यंत्र दिख रहा है और वो केसेट जैसा दिख रहा है केसैट जो प्ले करते थे ये सब विद्युत यंत्र है।

इसमें रणबीर कपूर है आलिया भट्ट है अमिताभ बच्चन जी है।

दो लड़के मिलके पंचर बना रहे है।

जगह दिख रही है जहाँ गाजर घांस उगी हुई है छोटी-छोटी सी जाली लगी हुई है।

बाकी लोग श्रद्धालु इधर से उधर जा रहे हैं।

और उनके ऑटो का नंबर है सिक्सटी वन ।

ब्लू कलर का गमछा डाला हुआ है।

बल्ले दिख रहे है बहुत सारे बल्ले एक दो तीन चार पांच छे सात आठ नौ बल्ले दिख रहे है।

लकड़ी के आकार के ओ बना के रखे हैं ऐन्ना अंदर जाने के लिए कलाकृति।